जो व्हाइट कलर का है और यहाँ पे दो में अ यहा पे कुछ समान रखी हुई है यह हॉस्पिटल बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं।

'' यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे मॉम्स बेकरी लिखा हुआ है और यहाँ पे बो-बोटल चिप्स वगैरह यहाँ पे रखे हुवे है और यहाँ पे दो दुकान दिख रहा है। ''

यहाँ पे न्यू मैक्स बेकरी लिखी हुई है और यहां पे अ--बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।